इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक फॉर्म में डेटा प्रविष्ट करें और नवीनीकरण यानि डेटा अपडेट करें
पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि कैसे एक फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल्स जोड़ें
इस ट्यूटोरियल में चलिए सीखते हैं कि कैसे एक फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए डेटा प्रविष्ट करें और डेटा अपडेट करें
यह करने से पहले अपने फॉर्म डिजाईन में केवल तीन और बदलाव करते हैं
सबसे पहले लिबरऑफिस बेस प्रोग्राम खोलते हैं यदि वह पहले से नही खुला है
और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं
फाइल मेन्यु के अंदर ओपन पर क्लिक करके
अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में है
और हम बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स फॉर्म को खोलेंगे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
और फिर एडिट पर क्लिक करें
हम अब फॉर्म डिजाइन विंडो में हैं
यहाँ पहले फॉर्म का आकार बदलें जिससे कि यह छोटा और कम प्रभावशाली दिखे
यह करने के लिए हम अपने फॉर्म विंडो की ऊंचाई और लम्बाई घटा देंगे
हम यह फॉर्म विंडो के उपर और बगल में क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करके करेंगे
अगला अपने फॉर्म के शीर्षक का फ़ॉन्ट बदलते हैं
सबसे ऊपर फॉरमैटिंग टूलबार में से फ़ॉन्ट को एरियल ब्लैक और आकार 12 में बदलते हैं
अंततः फॉर्म कंट्रोल्स के टैब क्रम को देखते हैं
यह हमें फॉर्म कंट्रोल्स में एक विशिष्ट क्रम में जाने के लिए कीबोर्ड टैब बटन का इस्तेमाल करने में मदद करता है उदाहरणस्वरुप कहिये ऊपर से नीचे
यह टैब क्रम कहलाता है
अब बेस फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल्स के टैब क्रम को स्वतः ही उपर से नीचे निर्धारित करता है
किन्तु चूँकि हमने कुछ टेक्ट बॉक्सेस को हटा दिया है और दो नये लिस्ट बॉक्सेस और चार बटन्स जोड़े हैं हमने सम्भवतः टैब क्रम मिला दिया होगा
अतः हम इसे अभी निर्धारित करेंगे
फॉर्म डिजाईन टूलबार में साधारणतः विंडो के नीचे मिलता हैं हम आइकंस को शुरू से अंत तक देखेंगे और टूलटिप के साथ आइकन खोजेंगे जो कहेगा एक्टिवेशन आर्डर
चलिए इस आइकन पर क्लिक करते हैं
अब हम Tab आर्डर शीर्षक के साथ एक छोटी पॉपअप विंडो देखते हैं
इन फॉर्म कंट्रोल्स को क्रम में लगाने के लिए या तो हम वस्तुओं को क्लिक ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं
या हम मूव यूपी या मूव डाउन बटनों का प्रयोग कर सकते हैं
अतः चलिए टैब क्रम को जैसा चित्र में दर्शाया गया है वैसा निर्धारित करते हैं
हमने कर लिया अतः चलिए इन बदलावों को सेव करने के लिए ओक बटन पर क्लिक करते हैं
ठीक है अब कंट्रोल एस दबाकर अपना फॉर्म सेव करते हैं
और फिर हम फॉर्म विंडो बंद कर देंगे
और अंततः हमने अपना फॉर्म डिजाईन समाप्त कर लिया
अब अपना फॉर्म जांचते हैं
मुख्य बेस विंडो में चलिए बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स फॉर्म को इस पर डबल क्लिक करके खोलें
अब फॉर्म डेटा प्रविष्ट रूप में खुला है
शीर्षक पर ध्यान दीजिये जो कह रहा है फॉर्म टो ट्रैक बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स और यहाँ हम बुकिड्स और मेंबेरिड्स के स्थान पर बुक टाइटल्स और मेंबर नेम्स देख रहे हैं
इसके साथ ही यह बुकसिश्यूड टेबल का पहले रिकॉर्ड है हम देख रहे हैं बुक टाइटल के सामने एएन ऑटोबायोग्राफी चिह्नांकित है
और मेंबर नामे के सामने निशा शर्मा चिह्नांकित है
और हम बाकी फील्ड्स भी देख रहे हैं
अब हम नीचे फॉर्म नैविगेशन टूलबार आइकंस का इस्तेमाल करके सारे रेकॉर्ड्स में जा सकते हैं

चलिए अब दुसरे रिकॉर्ड पर जाते हैं
यहाँ हम देख सकते हैं कि सदस्य जैकब रोबिन ने मैकबेथ पुस्तक ली है और मानते हैं कि वह अब पुस्तक वापस कर रहा है
अतः इस जानकारी को इस रिकॉर्ड में अपडेट करते हैं
इसके लिए हम एक्चुअल रिटर्न डेट में टाइप करेंगे उदाहरणस्वरुप 7711 और चेक्ड इन फील्ड को चेक करिये यानि चुनिए
इस जानकारी को सेव करने के लिए हम सेव रेकॉर्ड बटन दबाएंगे जो हमने यहाँ रखा है
ध्यान दीजिये कि बटन धुंधले हो गये हैं मतलब है कि यह अब इस्तेमाल करने के लिए अक्षम हैं
किन्तु यदि हम इस रिकॉर्ड को फिर से बदलें तो बटन पुनः सक्षम हो जाएँगे
ठीक है अब चलिए उंडो चेंजों बटन को जाँचे
इसके लिए चलिए बुक टाइटल कॉन्क्वेस्ट ओएफ सेल्फ पर क्लिक करके रिकॉर्ड को बदलते हैं और फिर एक्चुअल रिटर्न डेट फील्ड में 5711 टाइप करते हैं
ध्यान दीजिये कि दोनों सेव रेकॉर्ड बटन और उंडो चेंजों बटन इस्तेमाल के लिए सक्षम हैं
अब चलिए उंडो चेंजों बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है
बदलाव जो हमने पहले किये थे वह रद्द हो गये हैं
ध्यान दीजिये कॉन्क्वेस्ट ओएफ सेल्फ के स्थान पर मैकबेथ चिह्नांकित है और एक्चुअल रिटर्न डेट 7711 है
ठीक है अब डिलीट रेकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं मतलब हम इस दुसरे रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं
बेस डिलीट के लिए सतर्क है अतः यह हमें सावधान करके एक पुष्टीकरण के लिए पूछता है
अभी के लिए चलिए आगे चलते है और येस बटन पर क्लिक करते है
हम देख सकते हैं रिकॉर्ड वाकई में डिलीट हुआ है स्क्रीन से जा चुका है और इसके स्थान पर हम अगला रिकॉर्ड देख रहे हैं
अंततः फॉर्म पर अंतिम बटन जो है न्यू रेकॉर्ड पर क्लिक करके एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं
चलिए कुछ वैल्युस टाइप करते हैं
चूँकि इश्यूइड स्वतः बनने वाला फील्ड है हम इसे छोड़ देंगे
और यहाँ चलिए जैसा चित्र में दर्शाया गया है वैसा डेटा जोड़ते हैं
प्रविष्टियों को सेव करने के लिए सेव रेकॉर्ड बटन पर क्लिक करें
हमने कर लिया
हमने डेटा प्रविष्ट और अपडेट करके फॉर्म जाँच लिया
यहाँ एक नियत कार्य है
सदस्यों की जानकारी दिखाने के लिए एक फॉर्म बनाइए
फॉर्म को दिखने में संक्षिप्त बनाइए
फ़ॉन्ट बोल्ड करिये
सेव और न्यू रेकॉर्ड बटन्स जोड़िए
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस पर फॉर्म डेटा के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे एक फॉर्म में डेटा प्रविष्ट और अपडेट करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैयह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद